ये पु-पुराना स्कूल दिख रहा है।

ये अच्छा लग रहा है एक आदमी इस पे खड़ा हुआ है।

हमें इस इमेज में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है।

और मिट्टी दिखाई दे रही है और ऑरेंज कलर का भी रास्ता-सा दिखाई दे रहा है और दूर एक टावर सा दिखाई दे रहा है।

की गई है ऊपर लाइट लगे हुए है और रेड कलर की चेयर है जिसपर सभी आदमी बठै हुऐ है।